ये एक सुन्दर चित्र है जिसमें एक रोड दिया गया है।

और सामने माओ माउंटेन दिख रहा है उसको ऊपर बादल बहोत --

और वो एक चट्टान के नीचे दिया गया है और बड़े-बड़े पत्थर भी है।